बादल वगैरह तो छाए हुए नहीं है लेकिन कुछ --

शांत इलाका है कुछ ये एक दो टेंपो वगैरा जाते दिखाई दे रहे हैं रात की टाइम का फोटो लिया है जो कि नीचे की साइड से ऊपर की ओर लिया गया है।

अ दारू की बोतल वगैरा है और भी कुछ अलग दवाइयां वगैरा बोतल वगैरा दिखाई देती वस्तुत हो रही हैं।

ये गली में जो बरांडा वगैरा होता है वहां से लिया गया जोकि कुछ टेबल वगेरा दिखाई दे रही है उसके अंदर भी कुछ सुइयां कुछ चीजे रखी गई है।

इस फोटो में बीकानेर का फोटो है एक ए_टी_एम का नाम लोगों को दिखाई दे रहा है नीचे काफी सारी गाड़ियां हैं जोकि अलग डिजाइन में गाड़ी खड़ी दिखाई देती व्यतीत हो रही है ये फोटो --

शुभ लाभ के वो स्टीकर दिखाई दे रहे हैं और ऊपर एक काफी बड़ा लट्टू लग रहा है जिसमें नीचे कुछ बर्थडे पार्टी के --

कोई भी कस्टमर नहीं दिख रहा है कुछ आगे उधर है।

जो चादरें वगैरह है वो खिंचाये पर बिछाई मतलब लगाई गयी है चेयर की आकृति की जो की काफी अच्छा फोटो लिया गया है कुछ --

तो काफी दूर से लिया गया काफी अच्छा है और कुछ कार वगैरा भी दिखाई दे रही है और बहोत सारे पेड़ वगैरा भी दिख रहे हैं और --

खारिच करके नाम लिखा गया है और बाहर की तरफ--

नीचे कुछ फ्री राहुल हेल्थ कैंप वगैरह नि स्कूल सिर्फ ब्लड बैंक प्रवेश के बारे में बताया गया है जिसमें टीचर्स और कुछ स्टूडेंटों ने --